बाइक लगा हुआ है एक कार है।

यहाँ पे बहोत सारी चीजें हैं और --

सारे पेड़ हैं यहाँ पे घर भी दिख रहा है।

ये बिल्डिंग क्रीम कलर का है और --

ये एक मिठाई का दुकान है यहाँ पे बहोत --

और ये नदी का पानी बहुत ही ज्यादा --